यहाँ ये एक मैदान है | इस मैदान में बच्चे खेल रहै है | एक ने साइकिल ले रखी है | साइकिल में बैट रखा है | यहाँ पे टेलीफोन का यहाँ पे बिजली का खंबा भी है | बड़े-बड़े पेड़ भी है | बादल है |

यहां पर ये एक सड़क जा रही है। इसमें बिजली का खम्बा है। उसमें बलफ लग रखा है। दो तीन टेलीफोन के खम्बें हैं।